कुछ बुके वगेरा कुछ किताबे वगेरा कुछ बुक वगेर कुछ अलग अलग चीज़े राखी हुई हैं ऊपर भी इस तरह से कांच का बना हुआ हैं उसमे काफी सारे टेडी बेयर वगेरा नजर आ रहे हैं और गिफ्ट्स नजर आ रहे हैं और यह नीचे की तरफ एक बा-बाइक खड़ी हैं जो के लाल रंग की हैं।